आसमान दिखाई दे रहा हैं ब्ल्यू कलर मे।

गा ओ गाड़ी के सामने में एक लड़का खड़ा हो के है रेड टी शर्ट रेड शर्ट पहन के ब्लैक पैंट पहन के है।

उपर में लाइट लोग लगा के है।

और वायर का पोल तीन ठो दिखाई दे रहा है और वायर भी दिखाई दे रहा है।

कुछ ब्रिज के तरफ में खड़ा हो रहे हो दोनों पानी बहुत सारा सीट से दिखाई दे रहे।

पेड़ बड़ा बड़ा करके दिखा रहा है ऊपर नीचे पहाड़ की तरह और टावर दिखाई दे रहा है एक बड़ा स--

दुकान भी दिखाई दे रहा है रॉड दिखाई दे रहा है वाइट पेंट से।

उसके सामने थोड़ा सूखा सूखा पत्ता लोग दिखाई दे रहा है।

और आसमान ब्लू कलर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

ए_सी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में स्टेज पे डांस परफॉर्मेंन कर रहे--

ग्रीन ग्रीन से है और आसमान ब्लू कलर का दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर का दिखाई दे रहे हैं।

पिक्चर में शादी के लिए कुछ डेकोरेशन करके दिखाई दे रहा है डेकोरेशन का कलर--

में पानी है पेड़ पेड़ है और बहुत गंदा सा दिखाई दे रहा है।

दूर दूर में माउंटेन और पेड़ लोग दिखाई दे रहे हैं अंधेरा से ब्लैक कलर में।

बदल फागी फागी दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर में सुंदर वाला घर दिखाई दे रहा है।

घर ब्लू कलर है बीच बीच में स्काई ब्लू है।

ये अंदर व्हाइट कलर है स्विच दिखाई दे रहा है।

आगे कलर का ने व्हाइट कलर का टोपी पहन के है।